प्रोग्राम है बहुत सारी भीड़ लगी हुई है।

डब्बे रखे हुए हैं और ये लड़का सेल्फी ले रहा है।

अ पीरियड लग रहा है क्राफ्ट यहां पे एक के मतलब सब बेंचेस रखे गए हैं।

ये एक ग्राउंड है ग्राउंड के फेंसिंग अंदर से पूरा पार्किंग --

यहाँ पे बुढ्हे के बाल बेचने वाला एक इंसान है।

ये एक नदी किनारा है नेचुरल वे है यहाँ पे एक बड़े से दो पत्थर रखे गए हैं।

अ दोनों भी लड़के एकल्ले हैं शायद--

पार्किंग अ मार्केट एरिया है स्ट्रीट मार्केट एरिया है यहाँ पे एक फ्रूट की लारी है एक इंसान क्रॉस कर रहा है यहाँ पे एक रिक्शा है।

इक्क बिल्डिंग है बिल्डिंग येलो कलर की बहुत पुरानी बिल्डिंग है उसके आगे एक बालकनी जैसा है पिलर्स पे खडी है।

आइसक्रीम के अ दो ऐसे अ लारी अ--

एक शॉप के सामने एक इंसान खड़ा है बाइक पे ऑरेंज श शर्ट पेहने हुए।

और यहाँ पे एक दरवाजा टूटा हुआ रखा गया है इधर शटर है।

अ डॉक्यूमेंट सबमिट करने आए हैं कुछ--

ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे वुडन से ऐसे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि मटेरियल ऊपर लेकर जाते आएँ।

यहां पे खड़ी सीमेंट और सबसे माल बनाया गया है।

एक स्वीट की शॉप है स्वीट एंड नमकीन की शॉप है।

समोसा कचौरी ये सब रखा गया है तोल अ--

अ ये टांकी टंकी लग रही है उसके ऊपर कं --

स्वीट की अ शॉप है स्वीट्स अ यहां पे बहोत सारे स्वीट्स रखे गए लड्डू गुलाब जामुन रसगुल्ला।

ये एक रोड है रोड के साइड से व्हाइट पट्टियां लगी है बॉर्डर्स की गई है।

अ पीछे अलमारी रखी है ऊपर अलमारी के ऊपर बॉक्स है एक चेयर है।

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने पार्किंग प्लॉट पार्किंग अ एरिया है।

ये एक गांव का एरिया है बाहर मशीन्स लगी है।

अ घर के दरवाजे के सामने एक अ चेयर है चेयर पर कुछ सामान रखा है ईंटों से बनी दिवाले हैं।

एक लड़का है जो ऊपर तट पे खड़ा है नीचे पानी है।